यहाँ पर एक नदी भी दिखाई दे रही है।

इस बर्थडे पार्टी में बलूंस का डेकोरेशन --

इसमें कई बुकशेल्फ्स रखे हुए हैं।

इस चित्र में एक मंदिर दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक पेड़ भी लगा हुआ दिख रहा है।

यहां डॉक्टर और एक नर्स भी दिखाई दे रही है।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

यहाँ कोई डिश बनी हुई रखी है।

जिसकी सजावट बहुत अच्छे से की गई है यहाँ पिलेट में --

इस चित्र में एक नई बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे रही है।

इस चित्र में घर दिखाई दे रहे हैं।

और कई सारे पेड़ भी लगे हुए हैं।

इस चित्र में एक बहुत खूबसूरत पार्क दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एक मस्जिद दिखाई दे रही है।

जहाँ कई लोग नमाज़ पढ़ते हुए --

जिसका नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है।

लाइटें जल रही है और उनसे लिखा हुआ है फिल एंड वाइब --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

यहाँ जमीन पर घास लगी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई है।

और कुछ गाड़ियाँ भी खड़ी हुई नदर आ रही हैं।

और एक ट्रक भी खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

दो पूल टेबल दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में एक बड़ा तालाब दिखाई दे रहा है।

बहुत हरियाली दिखाई दे रही है।

इस चित्र में एक फुववारा दिखाई दे रहा है।